हरियाली भी छाई हुई है जो बेहद ही अच्छी देखने को मिले है हरियाली और उधर से भी एक आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं। --

करते हुए नज़र आ रहे हैं दूर-दूर का दृश्य देखने के लिए--

तरह-तरह के सामान रखे गए हैं चावल रखे गए हैं दाल रखी गईं हैं जो खाने का बहोत ही सामान रखे गए हैं। --